यह एक चाय क्या दुकान का दृश्य है।

मंदिर का कलर ऑरेंज है।

यह एक गिन्नी गहना घर के बाहर का दृश्य है।

वहां पे एक बहोत बड़ा गेट है।

वाँ पे एक टेबल रखा हुआ है।

इसके ऊपर एक पंखा हैं।

आदमी के हाथ में फोन है।

बल का कलर सफेद है।

के ऊपर एक पंखा है।

आदमी के शर्ट का कलर पर्पल है।

दुकान के अंदर बहुत सारे लैपटॉप रखे हुए हैं।

जो अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है।

बेड के बेडशीट का कलर ब्लू है।

बेड के बगल में एक अलमारी रखा हुआ है।

टेबल के नीचे लाल कलर का आटा है।

वहां पे दीवाल का कलर सफेद है।

वहां पे एक खजूर का पेड़ हैं।

एक आदमी अपने साइकिल में मछली टांग रहा है।

इस मछली को कांटा वाला मछली कहते हैं।

होटल का नाम होटल बैदनाथ है।

यह एक फोन का दुकान का दृश्य है।

यह एक केयर का दृश्य है।

यहां बहुत सारे आदमी लाइन में लगे हुए हैं।

और जो उसके हाथ में घड़ी भी है।

मिट्टी का कलर ब्राउन है।

बिल्डिंग का कलर पीला है।

इसके बगल अह अलमारी है।

वहां पे एक चदरा है।

चदरा का कलर हरा है।

इसके बगल में दिवाल है।

बूढ़े बाबा के बगल में एक लड़का बैठा हुआ है।

वहां पे सेर्वो लिखा हुआ है सफेद कलर से।